यहां पे एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

वॉल में एक स्विच बॉक्स भी है।

यहां पे एक बुक स्टोर दिखाई दे रहा है।

किताब का ऊपर में बहुत सारा बैनर लगाके है।

वॉल में एक वेंटीलेटर भी दिखाई दे रहा है।

दो इलेक्ट्रिक पोल भी दिखाई दे रहा है।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

उनके नीचे में बहोत सारा पत्थर दिखाई दे रहा है।

साइड में बहुत सारा जंगल भी दिखाई दे रहा है।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

और ये टेबल के ऊपर में एक कैची है।

साइड में दो गेट दिखाई दे रहा है।

नीचे में बहुत सारे स्कूटी भी पार्क करके दिखाई दे रहा है।

पानी के किनारे में तीन ठो नाव दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा भी दिखाई दे रहा है।

सीलिंग में एक लाइट बल्ब भी टंगा के है।

बहुत सारा जर्सी भी दिखाई दे रहा है।

फ़िर आगे में तीन ठो स्कूटी दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है।

फिर एक बैनर भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के नीचे में बहुत सारा--

यहाँ पे एक त्रिपाल का घर दिखाई दे रहा है।

दुकान के आगे में एक स्कूटी भी पार्क करते है।

बिल्डिंग के किनारे में बहोत सारा बैंबू लगा के है।

एक ब्लू कलर का डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा बास्केट भी दिखाई दे रहा है।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

फिर वॉल में बहोत सारा फोटो भी चिपका के है।

फिर एक ट्रांसफार्मर भी दिखाई दे रहा है।